यहां पर एक औरत ने जामुनी कलर की साड़ी पहनी एक औरत ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है।

लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे --

यहाँ पर मेज पर एक आसमानी रंग की कपड़ा बिछा हुआ है तथा कुर्सियों का रंग हरा और बूरा है दीवार का रंग हरा है जमीन का रंग काला है।

जैसा कि पर देख पा रही हुँ मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जिस पे नीले रंग के सफ़ेद रंग से ए.टी.एम. लिखा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हुँ मुझे यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रही है। पोस्ट मास्टर कक्ष है ये पोस्ट ऑफिस जान पड़ता है। यहाँ पर दीवार का रंग सफ़ेद है तथा जमीन का रंग भी सफ़ेद है।

जैसा कि हम देख पा रही हुँ मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक आसमानी रंग का --

छपरा लगा हुआ तथा एक दूर इमारत दिख रही है जो सफेद रंग की जिस पर आसमानी रंग के टिन पड़ी हुई है।

जो कि भूरे रंग की है पेड़ की पत्तियाँ दिख रही जो पीले और हरे रंग की हैं।

जिस्पे कुछ लोगो के तस्वीर भी लगी हुई है पर्दो का रंग गुलाबी और सफ़ेद है।

जैसा कि मैं देख पार रही हुँ मुझे यहाँ बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

बादल का रंग सफेद और साफ है --

ये एक मंदिर का भवन है यहाँ पर जालेदार दरवाजे लगे हैं जो पीले और सफेद रंग के हैं।

दीवार का रंग क्रीम दीवार पे एक ए.सी. लगा जिसका रंग सफ़ेद है यहाँ पर एक पर्दा लगा है भूरे और सफ़ेद रंग का है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक ट्रैन की पटरी दिखाई दे रही है जिसक रंग किनारों पर घास उगी है जो हरे रंग की है।

खाली है यहाँ पर एक झूला है जो लाल रंग का झूला पर ये बच्ची बैठी जिसने आसमानी रंग के स्वेटर --

जमीन पर रंगोली बना रही है जमीन का रंग काला तथा रंगोली लाल सफ़ेद बैंगनी और हरे रंग के --

यहाँ पर दो लोग उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं दोनों के हाथ में सफेद रंग के ग्लव्स है उनके मुँह पर माक --

भी है एक आदमी के कंधे पर आला लटका हुआ है उसने आसमानी रंग के कपडे पेहेन रक्खे हैं।

यहाँ पर एक तखत पड़ा हुआ है जो काले रंग का तथा इस पर लाल रंग की मैट बिची हुई है जिस पर बहुत सारी --

रंग की है यहाँ पर एक फूल बना हुआ है जो भूरे रंग का है किनारे पर घास उगी है जो हरे रंग की है जमीन का रंग काला है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफ़ेद है यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा हुआ है जो लाल रंग का है जमीन का रंग काला है।

किनारे-किनारों पर पेड़ो की क्यारियां बनी है जो हरे रंग की है तथा यहाँ पर हरे-हरे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

सडक का रंग काला है किनारे-किनारे पर क्यारियाँ बनी हुई है जो हरे रंग के तथा इसमें पीले रंग के फूल लगे हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा बागीचा दिखाई दे रहा है जिसमे हरे रंग के छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

जो सफेद रंग की तथा नीचे एक पट्टी बनी हुई है जो भूरे रंग की है बादल का रंग साफ नहीं है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां पर इमारत दिखाई दे रही है जिस पर होटल लिओ इन लिखा हुआ है इमारत का रंग हरा और आसमानी है।

यहाँ पर एक पुल है जिसका रंग का काला है नीचे हरी-हरी घास उगी हुई है यहाँ पर बांस का का बना हुआ एक --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है जिसकी जमीन का रंग काला है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां पर एक --

जमीन का रंग भूरा है दीवार का रंग पीला है यहाँ पर दरवाजे जो भूरे रंग का है।

यहाँ पर जमीन का रंग काला है मशीन का रंग भूरा है मशीन जो है वो लकड़ी की बनी हुई है।

तथा नीले रंग की पेंट उसके पैर में काले रंग के जूते हैं --

ईमारत सफ़ेद रंग की है यहाँ पर पीले रंग कि लाइट लगी है तथा यहाँ पर आसमान में सफ़ेद लाल रंग के झंडे भी --

लगे हुए हैं यहाँ पर एक हरी रंग के कारपेट बिछी हुई यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने रंग बिरंगे --

यहाँ पर हरे-हरे बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

काले-काले दो तार दिखाई दे रहे हैं बादल का रंग साफ नहीं है सूर्य की रोशनी पानी पर पड़ रही है।

जिन्होंने रंग-बिरंगे के कपड़े पहन रखे हैं यहाँ पर पत्तियों द्वारा सजाया गया है जो हरे रंग की हैं।